पीछे एक प्लस नैय निशान लगा हुआ है।

और दुकान के ऊपर लिखा है माँ चंचला ड्राई फ्रूट लाल रंग से--

और टिश्यू पेपर रखे हुए है।

ये स्टेचू मटमैले रंग का है।

जिन्होंने सर पे पल्लू डाल रखा है और घर सर पे गमछा बांध रखा है।

हरे रंग से जिम फिटनेस --

कवच पे ए स्लेश एफ लिखा हुआ है।

सामने ए मुझे गुलाब के--

और दो बिले नीले रंग की हैं एक पीले और नारंगी रंग की है।